यहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं एंड अहः किसी व्यक्ति का उ उ उ घर का ऊपर की छत पड़ रही है।

यह एक प्रकार का कार अ ए पार्किंग है। यहाँ पर व्यक्ति अपनी-अपनी कार खड़ी कर सकते हैं और --

और यह व्यक्ति थोड़ा बहुत --